जो कि कुछ खा रहे हैं पीछे की तरफ एक लकड़ी लगी है।

एक नीले और पीले रंग की एक लाल और पीले रंग की--

जो की सफेद और हरे रंग की हैं बाहर की तरफ कई सारे पिलर लगे हुए हैं।

एक मकान है मकान के बाहर सफेद रंग का काउंटर रखा है।

पीछे एक मकान बना हुआ है जिसके ऊपर एक बड़ी लाइट लगी है।

एक दुकान है दुकान में सामने एक काउंटर है जो की भूरे रंग का है।

एक दरवाजा लगा हुआ है जिसके पास में तीन बच्चे खड़े हुए हैं।

पत्थर से बने हुए जीने हैं जिनके किनारे छोटे छोटे दीवाल बनी है।

एक हाल है हाल में सामने की तरफ पोस्टर लगे हुए हैं।

सूरी ऑटोमोबाइल्स और दीवार के पास में बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

जिसके ऊपर एक छोटा सा झंडा लगा है और चबूतरा बना है।